यहां पे कुछ चेयरें रखी हुई है।

और इसकी सिलिंग वाइट है जहां पे लाइटे भी लगी हुई है।

और वाइट कलर की पट्टी की लाइनिंग भी है।

और फल केले सेव संतरे अंगूर--

अ ढेर सारी चेयर भी लगे हुए हैं।

और कंप्यूटर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

और साइड में एक कचरे की डब्बा भी रखी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में बहुत सारी सब्जियां की तस्वीर नजर आ रही है।

और उसके आगे पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रही है।

और जंगल में पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इसके सीसे के दरवाजे हैं।

और वहां पे कुछ लोग बैठे हुए भी नजर आ रही है।

दृश्य में एक मस्जिद की तस्वीर नजर आ रही है।

इसके कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

और पानी में एक नाव भी नजर आ रही है।

और सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

और कुछ लकड़िया की दराज भी बनी हुई दिखाई दे रही है।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

यह दृस्य में एक बनती हुई घर नजर आ रही है ।

जो वाइट रेड कलर की फूल की माला बना कर के टंगी हुई है।

जोकि व्हाइट कलर की है।

और सामने एक करकट की घर भी दिखाई दे रही है।

और पानी के टंकी भी रखे हुए नजर आ रही है।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

दीवार क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।